ये साम एक कोंटर है बहुत ही ख --

फोटो है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्री है और यहां पे बहुत ही खतरनाक--

इस बस में बहुत बढ़िया फैसिलिटी है।

घास है यह खाद को बनाकर खेत में देंगे।